--और ये मुझे नाईट का समय लग रहा है यहा पर दो आदमी खड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे है और एक गाडी है और यहाँ एक मकान बना हुआ है वो दिख रहा है।

बाहर हरी - हरी घास है वो मुझे दिखाई दे रही है बाहर लाइट के तार मुझे दिखाई दे रहे है खम्भे है जो ऊपर से तार जाते हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में एक छोटी सी दुकान मुझे दिखाई दे रही है| दुकान के सामने एक पोस्टर लगा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है| एक शटर दिखाई दे रहा है| सामने एक दुकान है वो दिखाई दे रही है।